बनाने वाली मशीन हैं यह राउंड राउंड चलने वाली बिजली से चलने वाली मशीन हैं जिसके अंदर सीमेंट घोली जा रही दिखाई दे रही हैं।

साइज की अलग अलग शर्ट बनाकर अलग अलग रखे जाते हैं।

राशन का सामान इत्यादि हर चीज --

पूरी कोशिश करने की तैयारी कर रहा है यह एक सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य है।

यहां पर कई सारी बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं यहां पर खांचे बनाए जाते हैं।

केमिस्ट की दुकान पर उपलब्ध होता है।

ब्यूटी पार्लर की तस्वीर दिखाई दे रही है जैसा कि आप समझ सकते हैं ये ऑन रोड --

यह एक बहोत बड़ा खुला मिट्टी का मैदानसा बनाया गया हैं।

यह एक तीर्थ स्थान की तस्वीर है जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे यहां पर--

चोटी वाला मंदिर है इस मंदिर के ऊपर कई सारे झंडे भी लगे हुए हैं यहां के मेन एंट्रेंस गेट में कई सारी--

यह तस्वीर नाइट आउट की तस्वीर नजर आ रही है यहां पर डी_जे लगा नजर आ रहा है।

यहां पर चारों तरफ ग्रास से इसको--

बाउंड्री दी गई है और साथ ही में यहां पेड़ पौधे--

स्थान दिखाया गया है यह बहोत बड़ा महल की तरह--

की है जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे।

हॉस्पिटल के साथ ही एम खुली हुई एंबुलेंस खड़ी हुई है।

व्यक्ती यहां से स्कूटी चलाते हुए जा रहे हैं।

यह तस्वीर किसी कैफे की और रेस्टोरेंट की नजर आती है जैसे कि आप तस्वीर देखकर समझ ही पा रहे होंगे।

सुंदर सी डेकोरेशन की गई है यहां पर खाने के लिए टेबल चेयर रखी गई है टेबल पे पानी का जग सॉस --

यह एक बहुत सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य नजर आ रहा है जैसा कि आप तस्वीर में देखी पा रहे होंगे यह--

अह और व्हाईट कलर का फ्लावर बहुत बड़ा फ्लावर नजर आ रहा है।